यहां पर मेनू रखे हुए हैं।

कुछ लोग नजर आ रहे हैं।

एक माता दिख रही हैं।

इस चित्र में एक ढाबा दिख रहा है।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

इस चित्र में हमें एक खेत दिख रहा है।

काले गमले नजर आ रहे हैं।

एक बाइक नजर आ रही है।

पट्टियां नजर आ रही हैं।

इस चित्र में हमें एक हॉस्पिटल दिख रहा है।

जो लड़की की जांच कर रहा है।

इस चित्र में हमें एक हाथी दिख रहा है।

इस चित्र में हमें एक रेस्टोरेंट --

काफी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

एक हमें सफेद टेम्पू दिख रहा है।

इस चित्र में हमें बाटा का शोरूम दिख रहा है।

काफी सारे पेड़ नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में एक कॉलोनी दिख रही है।

बुक सेंटर लिखा हुआ है।

लाइटें लगी हुई हैं।

कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं।

दो आदमी नजर आ रहे हैं।

काजू बादाम नजर आ रहा है।

कुछ बोतलें रखी हुई हैं।

डॉक्टर मोनिका जैन लिखा हुआ है।

आदमी टैटू बनवा रहा है।

एक क्रेन दिख रही है।

इस चित्र में एक शोरूम नजर आ रहा है।

इस चित्र में एक जगह दिख रही है।

काच का दरवाजा दिख रहा है।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

इस चित्र में एक होम्योपैथिक --